ऊपर गुलाबी कलर से सजा हुआ है रीमिक्स डी_जे रखा हुआ है।

पूरे घास उसके अगल-बगल पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

और व्हाइट कलर का कुछ पेटी रखा हुआ है।

नांव नीली कलर की है और सूर्य येलो कलर का है।

रेड कलर का येलो कलर का है और--

एक बाइक चालक आगे बाइक चला रहा है एक पीछे रेड कलर का एक आदमी पहन के बैठा है।

एक स्कॉर्पियो दिख रही जो वाइट कलर की है।

एक मस्जिद है जिसका कलर सफेद हरा हरा है।

ये कपड़े की दुकान है कुछ कपड़े टंगे हुए हैं काश दिख रहा है।

बगल में गेट हैं अंदर जाने के लिए बाहर से कुछ कपड़े दिख रहें हैं।

फ्रिज असमानी कलर की है बैग रखे हुए हैं।

और बीच में नीचे कुछ रखा हुआ है।

यहां किसी चीज का प्लांटेशन हो रहा है जिसे जिसमें बहोत सारे पौधे उगाए जा रहे हैं।